यह एक लाइब्रेरी सिस्टम है इसके अंदर चार पांच लोग दो तीन लड़कियां भी पढ़ रहीं हैं।

और यहां पर साइड में दो दो तीन पेड़ भी लगे है छोटे छोटे भी पेड़ पौधे लगे हुए है यहां पर अच्छी दूब भी है गार्डन भी है यहां पर --

और यहां स्पेस निकलवाने के लिए वेट करें लोग एक अ एक पुरुष खड़ा है आपके साथ -- चोरी चोरी नही होती है।

यहां पर अलग अलग तरह के डिजाइन में कांच लगाकर रखे हैं अच्छे लोग हैं यहां पर बेड भी काफी है।

यहां पर काफी सारी महिलाएं बैठी हैं जो कुछ बना रही हैं उनके हाथों एक रूमाल के अंदर कुछ सामान भी है इनके हाथों में।

सामने ब्लैक कलर का नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है यहां से एक व्यक्ति आ रहा है एक महिला जा रही है सामने एक साइकिल भी खड़ी है एक बाइक भी खड़ी है।

यहां पर काफी सारे फूल खिल रहे अभी अलग-अलग प्रकार के फूल खिल रहे हुए हैं और सब बढ़िया तरीके के फूल हैं सूंघने से बढ़िया फूल हैं।